बिल्डिंग में खिड़कियाँ खुली हुई है।

कुछ लोग खड़े है कोई मोबाइल से बात कर रहे है।

खेल रहे है बैठने के--

अच्छे से बने हुए है सब म अपने-अपने--

यहाँ पर पूल बनी हुई है दो पूल --

किसी चीज का स्टेचू बना हुआ है स्टेचू के नीचे कुछ लिखा हुआ है बोर्ड पर एक डस्टबिन भी है।

--खा हुआ एक गेठ नजर आ रहा।

रही है बहोत से बिल्डिंग बने हुए है।

गेट खुले है।